यहाँ पर आप सभी देख सकते है ये पत्थरो को काट के इसके अंदर एक होटल टाइप की बनाई गई है। घूमने के लिए जिसमे बहुत सुंदर --

इसमे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है और बहुत सारी खिड़की और दरवाजे भी बने हुए है।

और ब अ यहाँं से सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रिज के इस तरफ बहुत पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पर बोहोत सुंदर लाइट भी जल रही है। यहां पर एक कैबिनेट बना है। जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और यहां पर एबीसीडी का बोर्ड भी लगा हुआ है।

पर आप लोग देख सकते हैं ये एक मस्जिद बनी हुई है साइड मे व्हाइट कलर की और इसके सामने भी एक --

ये यहाँ पर इसके सामने की तरफ बहोत सारे पेड़ भी लगें हुए हैं।

यहाँ पर आप लोग देख सकते है। ये एक मेन रोड की वीडियो है जो कि छोटी गली के बीचों बीच में है। यहाँ से आपको काफी सारी गाड़ियां आती जाती --

और यहाँ पर एक वोटर एण्ड चिल्ड्रन पार्क का टैग भी लगा हुआ है।

जैसा की आप देख सकते है सामने की तरफ हरी घाँस मैं बहुत सारे--

से कुछ बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं और मकान के सामने एक ए-उम-ने बिजली का आ कुछ रखा है और दो मोटरसाइकिल भी पार्क की हुई हैं। यहाँ से दो तीन मकान भी दिखाई दे रहे हैं।